इसपे लिखा हुआ है बाल दाढ़ी जो की देखने मे सेलून लग रहै है और ये लिखा हुआ और इसके आ-सा गेट के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ है ।

पैर मे चप्पल पहने हुए हैं। हाथ में घड़ी है और बहोत मोटे तगड़े हैं। दिखने में बहोत अच्छे हैं जो शीशा का गेट लगा हुआ है। दिखने में भी बहोत अच्छे हैं।

यहाँ बहुत बड़ा घर है जो की यहाँ का ग्राउन्ड भी बहुत अच्छा है गेट भी बहुत अच्छा है यहाँ पे लिखा हुआ है महा महाराष्ट्रीय--